जिसमें लोग बैठे हुए भी हैं और सड़क भी दिखाई दे रही है और इसमें एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाया गया है।

हरियाली दिखाई गयी है पार्क भी दिख रहा है जिसमें हरी हरी घास दिखाई दे रही है फव्वारे भी दिखाई दे रहे है।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

सीसे के अंदर कुछ सामान भी रखा हुआ है और छोटे गमले मे पेड़ पौधे भी रखे हुए है और एक पायदान भी दिख रहा है।

पानी के कैंपर रखे हुए है उनमें से कुछ पानी निकल भी रहा है और गाड़ियां भी खड़ी दिखाई दे रही है और एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर सिमी में घर को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी चेयर दिखाई दे रही है और एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर कुछ नंबर भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो के अंदर एक पार्क को दिखाया गया है पार्क के अंदर हरि तीन दिखाई दे रही है जिसके नीचे कुछ लोग --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

इस फोटो के अंदर एक गेट है गेट के आगे सड़क है सड़क के ऊपर कुछ मिट्टी --

गेट है उसके आगे सीढ़ियां हैं सीढ़ियों के दोनों साइड गमले हैं गमलों में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

इस फोटो के अंदर पानी बह रहा है और आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ पोधै दिखाई दे रहे हैं और छत भी चमक रही है और अंदर भी साइड एक ऑफिस भी बना हुआ है।

कैलकुलेटर और पेटीएम भी दिखा खा रहा है।